ये दुकान पे रंग - बिरंगे पीले नीले लाल और गुलाबी गुलाब मिलते हैं।

वो अपने घर में पड़े वेस्ट मैटीरियल से भी बना --

और फल खाने से हम लोग सब तंदरुस्त भी रहते --

लोगों को आगे बढ़ने का मौका नही मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पे एक भीड़ एकत्रित हो गयी है। यहाँ पे अवश्य कोई मनमोहक कार्यक्रम चल रहा है।

यह मिट्टी के छोटे-छोटे सुन्दर-सुन्दर कला से बने आकृति हैं।

और हिन्दू समाज के लोग हनुमान जी और गणेश जी में उनकी आस्था बहोत ही गहरी है और यह बहोत ही पुरानी है।

और यहां पे हर तरीके का टेस्टी-टेस्टी बिस्किट भी मिलता है।

व्यायाम करने से हमारा शरीर भी तंदुरुस्त होता है और रोगों से मुक्त होता है।

जो कि और ये हमें फोंस के भी बारे में बताते हैं।